यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं घर बन रहा हैं ईटे अ अ लाइन कतार में लगी हुई हैं और--

ये एक आदमी हैं मस्जिद के बाहर इसमे एक बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हैं और--

औऔर यहाँ पे कोई भी आदमी नही हैं शीशे का ये एक--

और छोटे छोटे बच्चे पीछे एक बड़ी बिल्डिंग हैं उसके साथ में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी--

यहाँ पे एक बड़ी पार्क के आगे बहुत सारे लोग हैं जो सा यटीक--

और पीछे शीशा लगा हुआ हैं दुकान की हालत जो हैं बहुत ही खस्ता--

और तारे भी दिख रही हैं और ग्राउंड में लाइट्स लगी हुई हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं।

आदमी बैठा हुआ हैं जिसने लाल शर्ट लगाई हुई हैं और सिर पे एक टोपी भी हैं।

एक बड़ी सी नदी खुबसूरत सी जा रही हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रही हैं।

साइड में एक बकेट भी है जिससे ये मछलियाँ धोएगा और जो भी कस्टमर्स मछली लेना चाहते हैं उनको बेचकर।

यहाँ पे ये लोग योगा कर रहे हैं इनका इंस्ट्रक्टर वहाँ बीच में बैठा इनको देख रहा हैं ये मोटी मो--

अ अल्मारा अलमीरा दिख रही हैं मुझे जिसमे से कुछ अ किताबे और कुछ चीज़े रखी हुई हैं।

और साइड में पौधे लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत बाग हैं बहुत ही खूबसूरत हरियाली ही हरियाली हैं।

और एक दो अलमीरा भी दिख रही हैं जिसमे भी बुक्स हैं और इस क्लासरूम में दो पंखे भी लगाए गये--

लोग नही हैं यहाँ पे हरियाली हैं शांति हैं।

आ बहुत ही साफ-सुथरा एक बड़ा-सा आ इंस्टीट्यूशन है।